तेया होया ने बाहर तस्वीर भी बनी हुई है आतेश शहनाज हुसैन--

सामने एक बिल्डिंग भी बनी हुई है।

ऊपर नीला असमान भी लब रया है।

ए एक स्कूल है सामने स्कूल दा गे--

ये एक दुकान हैं इथै कुछ टायर्स स्पीकर्स सीटा --